बैनर लगा हुआ है पोस्टर है जिसपे फाइव टू सेवन हंड्रेड लिखा है।

पेड़ हैं पेड़ के पास तीन लड़के हैं रेड कलर की शर्ट पहना है चेक कलर की शर्ट पहना है।

ग्रीन कारपेट है कुर्सी है।

चल रहा है जो की ब्लू कलर का जीन्स पहना है लोहे का सरिया है।

मकान है मकान देखिये हरे रंग का है | गेट है | गेट पे --

पहले बच्चे के हाथ में शीट है सीज़र है।

ब्लू कलर का लिखा हुआ है | बैनर लगा हुआ है | सेकंड फ्लोर लिखा है | निचे दुकान है |

तीन-चार कार है आदमी खड़ा है जिसने ब्लैक कलर की पैंट पहना है पीछे मकान है पेड़ है।